एक फेटिक है बोहोत बड़ा जिसमे बोहोत सारी मशीनस है और आदमी ऐसे खड़ा है।

और पेटी के उपर तिन तिन बो लटका हुआ है और निचे में--

एक फुल इस साइड से रखा हुआ है ओए भूडा सा रखा हुआ है।

अ ग्रुप थोडा बाहर दिखाई दे रहा है।

एक मुर्गा जिसमे मुर्गा सा रखा है और इस गारी --

यह रेगिस्तान है चारो तरफ पेड़ पोधा पहाड़ो पर है और यहाँ कार लगी है और एक आदमी पीछे खरा है।

कंप्यूटर रूम है जहा पर लैपटॉप सब रखा मशीन से कु फोटोकॉपी करने वाला और उपर से वो खुल सब रखा है।

पानी में नाव में बोहोत सारा आदमी बेठे है और सुर्वी के किरा नेस पर पल रहा है और असमान का रंग--

का मंदिर है और मंदिर के पीछे भी एक मंदिर है और यहाँ पे उसके पीछे जथी--

यहाँ पोधा है मंदिर के रांधा हुआ मंदिर के आगे एक छोटा सा--

दीवाल घिरा हुआ है और इस तरफ रंग बिरंगे फूल सब--

कर रहे है और स्टेज पर सभी रा लाल कपड़ा पेहेन कर खड़ा हो--

यह एक दवाई दूकान है यहाँ पे एक आदमी का हाथ टुटा हुआ है हाथ पे पेरो से खाया है और वो गत्तो से मास में पेसे भर रहे है।

यह एक स्कूल है जिसके आगे एक बाग़ बेठा है और इसका गेट ग्रीन का है जिसपे लाल कलर से कुछ लिखा हुआ है।

लोको कंपनी का दुकान है यहां पे ये पेमेंट भरने के लिए स्कैनर रखा गया है।

और काते काते बोहोत पेड़ पोधे से लग रहे है हरे भरे मैदान है हरे भरे पेड़ पोधे से बोहोत दिख रहे है अच्छे--

यह एक रूम है जिसमें बहोत सारा जिम करने वाला मशीन से रखा गया है और सब का रंग लाल है।

बोहोत चीज लिखा हुआ है और बाहर का अलग ही या पिला कलर से बाहर दिखाई देरा रेड कलर से--

यहाँ एक बोहोत बड़ा दूकान है जिसके अन्दर बोहोत सारे सामान मतलब बोहोत सारे समान दिख रहे है और एक आदमी यहाँ पे है।

यहां पे एक घर है जिसके बाहर एक आदमी पीछे झोला लेके जा रहा है एक आदमी आगे है और धूप निकली हुई है आसमान का रंग--

उजला पड़ा हुआ है बादल और इसके पीछे पेड़ पोधा हा है दिखाई दे रहा है और--

और उपर से कुछ दिखाई देरा है--

यहाँ पहाड़ सा पत्थर सा दिख रहा है इसके पीछे हरे भरे पोधे सब दिख रहे है।

जंगल सब दिखाई दे रहा है और पत्थर बहोत बड़ा बड़ा दिखाई--

और बोहोत दूर पूरा मंदिर प्लास्तर पेंट किया गया है और यहाँ पे--

यहाँ एक ऑफिस है जिसके उपर बोहोत सारा पोस्टर चिपकाया गया है और इसमें बोहोत सारे कुछ रखे गये है।

और एक टेबल पे वाइट कलर में बोहोत चीज रखा गया है।

ये जंगल है जहा जाड के पानी से भाती है और पत्तो सा है पहाड़ सा और काते काते बोहोत बड़ा--

और जाली छाई गई है पेड़ पोधा सा है और आसमान वाइट कलर का लग रहा है और पानी छु रहा है।

जिला पानी है कितना गन्दा पानी पीछे दिखाई देरा है और पत्थर सब है।

यहाँ पे फोर लाइन रोड है जहा पे अनेको गाड़ी दिखाई दे रही है टेम्पू स्कोटर कार और यहाँ पे बिच में और--

और पीछे गोलाकार एक पत्थर है जानवर के आख तो थोडा लाल है थोड़ा उतन थोड़ा पीछे--

यहाँ एक शोरूम है जिसके अन्दर चुला सा कुकर सा धारा है मेने और अपना सब बांधा हुआ है उपर--

और कुर्सी सब रखा है --

यहाँ एक काना है जिसके काच चारो और बोहोत बड़ा बड़ा छाई हुई है और पहाड़ो पर से पानी टपक टपक के छु रहा है।

और इसके बीच में एक गाछी खाना है और पहाड़ पर से पानी--

और कुछ ही खोल खोल के बगल में दूकान है किराना दूकान सब है यहाँ पे थ्री की लिखा है।

और आदमी खरा है हर हर होरा अंगूर अंगूर--

यहाँ बोहोत ही खास फूस दिखाई दे रहा है एक जानवर सुता है एक जानवर खरा होक--

तिरंगा वहा पे टंका है और लाइट वोस और लाल कलर से किया गया और--

पहाड़ों के बीच में गिरी हुई है पानी बह रहा है और बड़े बड़े पत्थर सब है।

एक चिड़ियाघर है जिसके अंदर जानवर बांधे जालों से घेरा गया है उसमें उसके ऊपर से एक हरा कलर का पत्ता सब रोक रहा है।

और पीछे पुलोना से बांधा हुआ है बोर्ड है वाइट कलर का बोर्ड वाइट कलर का पेना है ब्लैक कलर का टीशर्ट --

धरा हुआ है और ब्लैक कलर का तार इसमें लगाया गया है।

और हरा भरा सा पेड़ पोधा सा दिखाई देरा है पहाड़ से गेरा गया है इधर रोड है रात्री का समय है अँधेरा दिखाई देरा है।

और इस साईट एक टेन स्टेन पंखा है एक आदमी साइड ताकरा है और स्विच बोर्ड सब ये साइड लगा हुआ है पीछे--

और करई ये और टाइल्स लगा है और चीज के दीवाल पर बोहोत सीसे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और आगे ऐनक लगा हुआ है।

के उपर पी_के मोटर्स लिखा है इसमें गली है और ग्रिल लगा है वाइट कलर का दीवार पेंट किया गया है इस गली के इस साइड घर सा लग रहा है।

और इस साइड पेड़ पौधा सब लौक रहा है असमान मे पूरा उजला आसमान है और उसके बीच में एक तार गया है और दो--

मछली बेच रहे हैं और इसका कैरेट पीला हरा नीला कलर का है मछली ब्लैक --

ये एक जंगल है जिसमे थोकी है और एक पेर कट कर गिरा हुआ है बगल में तोतलिया धरा हुआ है।

और वो घड़ी पे कपरा पसारा हुआ है बोहोत सारा पेड़ पोधा है हरियाली छाई हुई है।

और आगे जमीन लोकला है हाथी खरा होकर आ रहा है और आगे एक पेर खड़ा--

यह एक बड़ा मैदान है जिसके से वाइट कलर से गेड़ा हुआ है।

और बोहोत बिच में कुआ है उतिन और बोहोत हरियाली छाया हुआ है बादल मरोड़ है।

यहाँ एक दूकान है जिसके आगे एक आदमी बेठा है एक अन्दर भी बेठे है और उसके साइड खिल्ली है उपर--

इस साइड भी एक दूकान है जिस पर बोटल सब रखा है।